और पेमेंट के लिए बारकोड रखा हुआ है ऊपर चिप्स और कुरकुरे के--

और यहाँ पे कुछ मजदुर लोग खड़े हुए है जिनके हाथ में पाइप है तार रखा हुआ है सर पे इन्होने कपड़ा बांधा हुआ है।

यहाँ पर एक दुकान है दुकान के ऊपर में डेली नीड्स लिखा हुआ है।

और सामने बहोत घना जंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक लड़का और लड़की खड़े हुए है।

रौशनी नहीं दिखाई दे रही है बादल बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा हैं।

रस्सियों से बंधी हुई है और यहाँ किनारो के बगल में है किनारो के साइड में छोटे-छोटे पत्थर पड़े हुए है।